फिक्के पिंजरे में बंद हैं कुछ डलियों पे बैठे हुए दिख रहे हैं दाना खाते हुए दिख रहे हैं।

गाड़ियां खड़ी हुई दिख रहे कार दिख रहे हैं बहुत सारी रोड दिख रहा है रोड पे पिंक कलर दिख रहा है ग्रीन कलर दिख रहा है ऑरेंज कलर ब्लैक व्हाइट --

रेड कलर की शर्ट पेहने हुए पुतला खड़ा हुआ दिख रहा हैं कपड़ो की दूकान दिख रहा हैं फ्रॉक टंगी हुई दिख रही हैं पिंक कलर की नीले कलर के रेड कलर की |

चलाते हुए मशीन के पास खड़ा हुआ दिख रहा है सभी के फेस पे ब्लैक कलर दिख रहा है जामुनी कलर दिख रहा है दीवेलों पे पिंक कलर दिख रहा है और --

मकान दिख रहा है रेड कलर के गेट लगे दिख रहे हैं ब्लैक कलर दिख रहा है हल्का-सा।